ये पर एंच बिटिन एक बड़ी सी खिड़की उंडे - फंडे छोटी -छोटी खिड़की बन जूं पर की भगवान जी की मूर्ति छ निस बिटिन कालु कलर कु दरवाजु भी छ।